ऑफिस के बगल में कुछ बाइक लगा हुआ है।

तालाब के एक साइड एक पीपल का वृक्ष की तरह दिख रहा है।

तालाब के साइड में शायद रोड है जिस पर एक भेल लगा हुआ है।

बिल्डिंग के आगे कुछ अ हरे हरे वृक्ष लगे हुए हैं और कुछ लोग सब खड़े हैं।

यह दुकान किसी नई की दुकान की तरह लग रहा है जिसमें की एक ग्राहक बैठा हुआ है चेयर पे।

रैक पे बहुत सारे सौंदर्य के प्रोडक्ट रखा हुआ है।

रैक के बाहर विराट कोहली का एक बैनर पे फोटो दिख रहा है।

और दो क्रिस्टियन आदमी यहां पे खड़े है।

ये जगह किसी चौराहा की तरह लग रहा है।

जिसमें दो सुपर छत पे फैन लगा हुआ है।

सामने अअ कुछ समान रेंक पर रखा हुआ है।

यह जगह बहुत पुराना इमारत सा लग रहा है जो की ईटों का बना हुआ है।

पानी के अंदर एक नाव पे बहुत सारे लोग बैठा हुआ है।

और किनारे में कुछ टेबल की तरह लगा हुआ है जिस पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

जिस पर द ग्रैंड और कुछ लिखा हुआ है।

अंदर में कुछ रेड कलर का तीन स्विच दिख रहा--

ये अ टेब अ टेबल पे कुछ अ बोतल रखा हुआ है और एक गलास भी रखा हुआ है।

अ यहां दिखाई दे रहा है कि सारे गेट अभी ओपन है।

एक नींबू का कटा हुआ पीस दिखाई दे रहा है।

प्लेग्राउंड के चारों साइड वृक्ष लगा हुआ है।

नदी के दोनों साइड हरे हरे वृक्ष और घास दिख रहे हैं।

ओ कुछ चमकीला बल्ब लगा हुआ है।

यह बिल्डिंग किसी मंदिर की तरह लग रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर से कुछ बिजली का वायर गया हुआ है।

यह नदी के किनारे सूरज पानी में दिख रहा है।

और वाटर पार्क के बगल में एक आदमी दोनों हाथ में पैकेट लेके खड़ा है जो कि ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।